आ नीचे ए.टी.एम. विड्रोल सेंटर भी है ऊपर में मार्केट भी है बेहतरीन व्यवस्था है एक अच्छा सा बाजार है जो दिखने में काफी खूबसूरत और मनोरम --

ये एक फ्रूट की दुकान है और काफी आकर्षक लग रही है सामने मोसम्बी के हरे और पीले फल लगे हुए हैं।